और पोछा है ओर यहाँ पर बच्चों के बैट बॉल रखे हुए हैं। बाजु मे एक गेट लगा हुआ है जो रेड कलर का। ऊपर बैनर लगा हुआ है वाईट कलर का जिसमे दुकान का नाम लिखा हुवा है। यहाँ पे बहुत सारे कार्टून भी रखे हैं जिसमे सामान रखा हुआ है।

और पीछे बहुत सारा वो परदे लगे हुए हैं अरेनेज़ एंड वाईट कलर के फ्लोवर का डेकोरेशन का किया गया है रेड वाईट कलर का और उसमें ग्रीन कलर की पट्टी भी है और यहाँ पे बहुत सारे गमले रखे हुए हैं जिसमें छोटे-छोटे पौधे लगे --

सड़क बनी हुयी है। सड़क में एक रिक्शा खड़ा हुआ है। एक ऑटो खड़ा हुआ है। यहाँ पे एक दुकान लगी हुई है। जहाँ पे बहोत सारे गुटके टंगे हुए हैं और यहाँ पे एक मंदिर जैसा कुछ बना हुआ है जिसमें गोल्डन कलर पुता हुआ है।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

यहाँ पर दो जैंस है जो सेविंग कर रहे है नीचे टाईल्स लगी हुयी है जो वाईट और ब्लेक कलर की है और यहाँ पे बैलून लगे हुए है जो परपल यल्लो एंड वाईट कलर के --